दुकान में बहोत सारे रंग बिरंगे डब्बे दिख रहे--

ठीक सफाई होती है और यहां पे सुई ले के उसको ठीक किया जाता है किसी तरह का प्रॉब्लम को ठीक की--

और भी यहां पे तरह तरह की दुकान है।

लेकिन दवाई की दुकान में दवाई मिलेगी।

पीले कलर की पर्दे लगे हुए है बहुत ही सुंदर।

उजली लाल कलर की पेंट से लोहे की गेट --

बनी हुई है मंदिर का मेन गेट ये लड़का वहां पे--

ये दुकान है यहां पे बर्गर मिलता है पिज़्ज़ा मिलता है सैंडविच मिलता है यहां पे --

यह दुकान माला की दुकानें लग रही हैं।

जानकारी ले रहे है बच्चे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जेंट्स महिला लेडिस सभी यहां पे--

प्लेटी लिख रही हुई है ऐसा लग रहा किसी पार्टी के लिए सजाया गया है।